और वहाँ एक दरवाजा भी मजूद है।

और दूर-दूर तक बहौत बड़े-बड़े दरख़ --

एक आदमी ने माल्टे कलर की शॉर्ट पहनी हुई है।

यहां पर एक कश्ती भी खड़ी है।

बैग पहना हुआ है और नीले कलर का कोट पहना हुआ है।